मेरे प्यारे देशवासियोंनमस्कार
आज रामनवमी का पावन पर्व है
रामनवमी के इस पवित्र पर्व पर देशवासियों को मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएँ
पूज्य बापू के जीवन में राम नाम की शक्ति कितनी थी वो हमने उनके जीवन में हर पल देखा है
पिछले दिनों 26 जनवरी को जब आसियान आसियान देशों के सभी महानुभाव यहाँ थे तो अपने साथ कल्चरल ट्रूप लेकर के आये थे और बड़े गर्व की बात है कि उसमें से अधितकतम देश रामायण को ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे
यानी राम और रामायणन सिर्फ़ भारत में लेकिन विश्व के इस भूभाग में आसियान कंट्रीज में आज भी उतने ही प्रेरणा और प्रभाव पैदा कर रहे हैं
मैं फिर एक बार आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएँ देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो हर बार की तरह इस बार भी मुझे आप सबके सारे पत्रemail फोनकॉल और कमेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं
कोमल ठक्कर जी ने MyGovपर आपने संस्कृत के ओनलाइन कोर्सेस शुरू करने के बारे में जो लिखा वो मैंने पढ़ा
IT प्रोफेशनल होने के साथसाथ संस्कृत के प्रति आपका प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा
मैंने सम्बंधित विभाग से इस ओर हो रहे प्रयासों की जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए कहा है
मन की बात के श्रोता जो संस्कृत को लेकर कार्यकरते हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करें कि कोमल जी के सुझाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए
श्रीमान घनश्याम कुमार जी गाँव बराकर जिला नालन्दा बिहार आपके NarendraModiAppपर लिखे कमेंट्स पढ़े
आपने जमीन में घटते जलस्तर पर जो चिंता जताई है वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है
श्रीमान शकल शास्त्री जी कर्नाटक आपने शब्दों के बहुत ही सुन्दर तालमेल के साथ लिखा कि आयुष्मान भारत तभी होगा जब आयुष्मान भूमि होगी और आयुष्मान भूमि तभी होगी जब हम इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी की चिंता करेंगे
आपने गर्मियों में पशुपक्षियों के लिए पानी रखने के लिए भी सभी से आग्रह किया है
शकल जी आपकी भावनाओं को मैंने सभी श्रोताओं तक पहुँचा दिया है
श्रीमान योगेश भद्रेशा जी उनका कहना है कि मैं इस बार युवाओं से उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करूँ
उन्हें लगता है कि एशियन कंट्रीज में तुलना करें तो हमारे युवा फिजिकली वीक हैं
योगेश जी मैंने सोचा है कि इस बार हेल्थ को लेकर के सभी के साथ विस्तार से बात करूँ फिट इंडिया की बात करूँ
और आप सब नौजवान मिल करके फिट इंडिया कामूवमेंट भी चला सकते हैं
पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति काशी की यात्रा पर गए थे
वाराणसी के श्रीमान प्रशांत कुमार ने लिखा है कि उस यात्रा के सारे दृश्यमन को छूने वाले थे प्रभाव पैदा करने वाले थे
और उन्होंने आग्रह किया था कि वो सारे फ़ोटो सारेवीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित करनी चाहिये
प्रशांत जी भारत सरकार ने वो फ़ोटो उसी दिन सोशल मीडिया और NarendraModiAppपर शेयर कर दिए थे
अब आप उनको लाइक करें और रेटविट करें अपने मित्रों को पहुँचाएँ
चेन्नई से अनघा जयेशऔर बहुत सारे बच्चों ने एक्साम वारियर पुस्तक के पीछे जो ग्रेटीट्यूड कार्ड्स दिए हैं उन पर उन्होंने अपने दिल में जो विचार आये वो लिख कर मुझे ही भेज दिए हैं
अनघा जयेशमैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आपके इन पत्रों से मेरे दिनभर की थकान छूमन्तर हो जाती है
इतने सारे पत्र इतने सारे फोन कॉल कमेंट्सइनमें से जो कुछ भी मैं पढ़ पाया जो भी मैं सुन पाया और उसमें से बहुत सी चीजें हैं जो मेरे मन को छू गयी सिर्फ़ उनके बारे में ही बात करूँ तो भी शायद महीनों तक मुझे लगातार कुछनकुछ कहते ही जाना पड़ेगा
इस बार ज्यादातर पत्र बच्चों के हैं जिन्होंने एक्साम के बारे में लिखा है
छुट्टियों के अपने प्लान शेयर किये हैं
गर्मियों में पशुपक्षियों के पानी की चिंता की है
किसानमेलों और खेती को लेकर जो गतिविधियाँ देशभर में चल रही हैं उसके बारे में किसान भाईबहनों के पत्र आये हैं
Water कंजर्वेशन को लेकर के कुछ सक्रिय नागरिकों ने सुझाव भेजे हैं
जब से हम लोग आपस में मन की बात रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं तब से मैंने एक पैटर्न देखा है कि गर्मियों में ज्यादातर पत्रगर्मियों के विषय लेकर के आते हैं
परीक्षा से पहले विद्यार्थीमित्रों की चिन्ताओं को लेकर केपत्र आते हैं
festival सीजन में हमारे त्योहार हमारी संस्कृति हमारी परम्पराओं को लेकर के बातें आती हैं
यानी मन की बातें मौसम के साथ बदलती भी हैं और शायद यह भी सच है कि हमारे मन की बातें कहीं किसी के जीवन में मौसम भी बदल देती हैं
और क्यों न बदले आपकी इन बातों में आपके इन अनुभवों में आपके इन उदाहरणों में इतनी प्रेरणा इतनी ऊर्जा इतना अपनापनदेश के लिए कुछ करने का जज़्बा रहता है
यह तो पूरे देश का ही मौसम बदलने की ताक़त रखता है
जब मुझे आपके पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि कैसे असम के करीमगंज के एक रिक्शाचालक अहमद अली ने अपनी इच्छाशक्ति के बल पर ग़रीब बच्चों के लिए नौ 9स्कूल बनवाये हैं तब इस देश की अदम्य इच्छाशक्ति के दर्शन होते हैं
जब मुझे कानपुर के डॉक्टर अजीत मोहन चौधरी की कहानी सुनने को मिली कि वो फुटपाथ पर जाकर ग़रीबों को देखते हैं और उन्हें मुफ़्त दवा भी देते हैं तब इस देश के बन्धुभाव को महसूस करने का अवसर मिलता है
13 साल पहले समय पर इलाज़ न मिलने के कारण कोलकाता के Cabचालक सैदुललस्कर SaidulLaskarकी बहन की मृत्यु हो गयी उन्होंने अस्पताल बनाने की ठान ली ताकि इलाज़ के अभाव में किसी ग़रीब की मौत न हो
सैदुलने अपने इस मिशन में घर के गहने बेचे दान के ज़रिये रूपये इकट्ठे किये
उनकी कैब में सफ़र करने वाले कई यात्रियों ने दिल खोलकर दान दिया
एक इंजिनियर बेटी ने तोअपनी पहली सैलरी ही दे दी
इस तरह से रूपये जुटाकर 12 वर्षों के बाद आख़िरकार सैदुललस्कर ने जो भागीरथ प्रयास कियावो रंग लाया और आज उन्हीं की इस कड़ी मेहनत के कारण उन्हीं के संकल्प के कारण कोलकाता के पास पुनरी पुनरी गाँव में लगभग 30 बेद की क्षमता वाला अस्पताल बनकर तैयार है
यह हैन्यू इंडिया की ताक़त
जब उत्तरप्रदेश की एक महिला अनेकों संघर्ष के बावजूद 125 शौचालयों का निर्माण करती है और महिलाओं को उनके हक़ के लिए प्रेरित करती है तब मातृशक्ति के दर्शन होते हैं
ऐसे अनेक प्रेरणापुंज मेरे देश का परिचय करवाते हैं
आज पूरे विश्व में भारत की ओर देखने का नज़रिया बदला है
आज जब भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है तो इसके पीछे माँभारती के इन बेटेबेटियों का पुरुषार्थ छुपा हुआ है
आज देश भर में युवाओं में महिलाओं में पिछड़ों में ग़रीबो में मध्यमवर्ग में हर वर्ग में यह विश्वास जगा है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं हमारा देश आगे बढ़ सकता है
आशाउम्मीदों से भरा एक आत्मविश्वास का सकारात्मक माहौल बना है
यही आत्मविश्वासयही पॉजिटिविटी न्यू इंडिया का हमारा संकल्प साकार करेगीसपना सिद्ध करेगी
मेरे प्यारे देशवासियो आने वाले कुछ महीने किसान भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं
इसी कारण ढ़ेर सारे पत्र कृषि को लेकर के आए हैं
इस बार मैंने दूरदर्शन का डिड किसान चैनल पर जो किसानों के साथ चर्चाएं होती हैंउनके वीडियो भी मंगवा कर देखे और मुझे लगता है कि हर किसान को दूरदर्शन की ये डिड किसान चैनल से जुड़ना चाहिए उसे देखना चाहिए और उन प्रयोगों को अपने खेत में लागू करना चाहिए
महात्मा गाँधी से लेकर के शास्त्री जी हों लोहिया जी हों चौधरी चरण सिंह जी हों चौधरी देवीलाल जी हों सभी ने कृषि और किसान को देश की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन का एक अहम् अंग माना
मिट्टी खेतखलिहान और किसान से महात्मा गाँधी को कितना लगाव थाये भाव उनकी इस पंक्ति में झलकता है जब उन्होंने कहा था
टो फोरगेट होव टो डिग थे अर्थ एंड टो टेंड थिसोइल इस टो फोरगेट औरसेल्व्स
यानी धरती को खोदना और मिट्टी का ख्याल रखना अगर हम भूल जाते हैं तो ये स्वयं को भूलने जैसा है
इसी तरह लालबहादुर शास्त्री जी पेड़ पौधे और वनस्पति के संरक्षण और बेहतर कृषिढांचे की आवश्यकता पर अक्सर ज़ोर दिया करते थे
डॉ० राम मनोहर लोहिया ने तो हमारे किसानों के लिए बेहतर आय बेहतर सिंचाईसुविधाएँ और उन सब को सुनिश्चित करने के लिए और खाद्य एवं दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जनजागृति की बात कहीथी
1979 में अपने भाषण में चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करनेनए इनोवेशन करने का आग्रह किया इसकी आवश्यकता पर बल दिया
मैं पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कृषिउन्नतिमेले में गया था
वहाँ किसान भाईबहनों और वैज्ञानिकों के साथ मेरी बातचीत कृषि से जुड़े अनेक अनुभवों को जानना समझना कृषि से जुड़े इनोवेशंस के बारे में जानना ये सब मेरे लिए एक सुखद अनुभव तो था ही लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था मेघालय और वहाँ के किसानों की मेहनत
कम क्षेत्रफल वाले इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है
मेघालय के हमारे किसानों ने वर्ष 201516 के दौरान पिछले पाँच साल की तुलना में रेकॉर्ड पैदावार की है
उन्होंने दिखाया है कि जब लक्ष्य निर्धारित हो हौसला बुलंद हो और मन में संकल्प हो तो उसे सिद्ध कर सकते हैं करके दिखाया जा सकता है
आज किसानों की मेहनत को टेक्नोलॉजी का साथ मिल रहा है जिससे कृषिउत्पादकको काफी बल मिला है
मेरे पास जो पत्र आये हैं उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे किसानों ने एमएसपी के बारे में लिखा हुआ था और वो चाहते थे कि मैं इस पर उनके साथ विस्तार से बात करूँ
भाइयो और बहनो इस साल के बजट में किसानों को फसलों की उचित क़ीमत दिलाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है
यह तय किया गया है कि अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपीउनकी लागत का कमसेकम डेढ़ गुणा घोषित किया जाएगा
अगर मैं विस्तार से बताऊँ तो एमएसपी के लिए जो लागत जोड़ी जायेगी उसमें दूसरे श्रमिक जोमेहनत और परिश्रम करते हैं उनका मेहनताना अपने मवेशी मशीन या क़िराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का ख़र्च बीज का मूल्य उपयोग की गयी हर तरह की खाद का मूल्य सिंचाई का ख़र्च राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज़ अगर ज़मीन लीज पर ली है तो उसका किराया और इतना ही नहीं किसान जो ख़ुद मेहनत करता है या उसके परिवार में से कोई कृषि कार्य में श्रम योगदान करता है उसका मूल्य भी उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा
इसके अलावा किसानों को फसल की उचित क़ीमत मिले इसके लिए देश में एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है
गाँव की स्थानीय मंडियां व्होलसेल मार्केट और फिर ग्लोबल मार्केट से जुड़े इसका प्रयास हो रहा है
किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े इसके लिए देश के 22 हज़ार ग्रामीण हाटों को ज़रुरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड करते हुए एपीएमसी और एनाम प्लैटफार्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा
यानी एक तरह से खेत से देश के किसी भी मार्केट के साथ कनेक्ट ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है
मेरे प्यारे देशवासियोइस वर्ष महात्मा गाँधी की 150वीं जयंतीवर्ष के महोत्सव की शुरुआत होगी
यह एक ऐतिहासिक अवसर है
देश कैसे यह उत्सव मनाये स्वच्छ भारत तो हमारा संकल्प है ही इसके अलावा सवासौ करोड़ देशवासी कंधेसेकंधा मिलाकर कैसे गाँधी जी को उत्तमसेउत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं क्या नयेनये कार्यक्रम किये जा सकते हैं क्या नयेनये तौरतरीक़े अपनाए जा सकते हैं आप सबसे मेरा आग्रह है आप MyGovके माध्यम से इस पर अपने विचार सबके साथ शेयर करें
गाँधी 150 का लोगो क्या हो sloganया मंत्र या घोषवाक्य क्या हो इस बारे में आप अपने सुझाव दें
हम सबको मिलकर बापू को एक यादगार श्रद्धांजलि देनी है और बापू को स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे देश को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाना है
फ़ोननमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं प्रीति चतुर्वेदी गुडगाँव से बोल रही हूँ प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आपने स्वच्छभारत अभियान को एक सफलतापूर्ण अभियान बनाया है अब समय आ गया है कि हम स्वस्थभारत अभियान को भी उसी तरह से सफल बनाएँ इस अभियान के लिए आप लोगों कोसरकारों को इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से Mobiliseकर रहे हैं इस पर हमें कुछ बताएं धन्यवाद
धन्यवाद आपने सही कहा है और मैं मानता हूँ कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत दोनों एकदूसरे के पूरक हैं
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज देश कन्वेंशनल अप्रोच से आगे बढ़ चुका है
देश में स्वास्थ्य से जुड़ा हर काम जहाँ पहले सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी होती थी वहीं अब सारे विभाग और मंत्रालय चाहे वो स्वच्छतामंत्रालय हो आयुषमंत्रालय हो मिनिस्ट्री ओएफ केमिकल्स एंड Fertilizersहो उपभोक्ता मंत्रालय हो या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो या तो राज्य सरकारें हों साथ मिलकर स्वस्थभारत के लिए काम कर रहे हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ के साथसाथ अफोर्डेबल हेल्थ के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है
प्रिवेंटिव हेल्थकेयर सबसे सस्ता भी है और सबसे आसान भी है
और हम लोगप्रिवेंटिव हेल्थकेयर के लिए जितना जागरूक होंगें उतना व्यक्ति को भी परिवार को भी और समाज को भी लाभ होगा
जीवन स्वस्थ हो इसके लिए पहली आवश्यकता है स्वच्छता
हम सबने एक देश के रूप में बीड़ा उठाया और इसका परिणाम यह आया कि पिछले लगभग 4 सालों में सैनिटेशन कवरेज दोगुना होकर करीबकरीब 80प्रतिशत 80हो चुका है
इसके अलावा देशभर में हेल्थ वेलनेस Centresबनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर काम हो रहा है
प्रिवेंटिव हेल्थकेयर के रूप में योग ने नये सिरे से दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है
योगfitness और वेलनेस दोनों की गारंटी देता है
यह हम सबके कमिटमेंट का ही परिणाम है कि योग आज एक मस्स मूवमेंट बन चुका है घरघर पहुँच चुका है
इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून इसके बीच 100 दिन से भी कम दिन बचे हैं
पिछले तीन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों पर देश और दुनिया के हर जगह लोगों ने काफी उत्साह से इसमें भाग लिया
इस बार भी हमें सुनिश्चित करना है कि हम स्वयं योग करें और पूरे परिवार मित्रों सभी को योग के लिए अभी से प्रेरित करें
नए रोचक तरीक़ों से योग को बच्चों में युवाओं में सीनियर citizensमें सभी आयुवर्ग में पुरुष होया महिला हर किसी में पॉपुलर करना है
वैसे तो देश का टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सालभर योग को लेकर अलगअलग कार्यक्रम करता ही है पर क्या अभी से लेकर योग दिवस तक एक अभियान के रूप में योग के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो मैं योग टीचर तो नहीं हूँ
हाँ मैं योग प्रैक्टीशनर जरुर हूँ लेकिन कुछ लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से मुझे योग टीचर भी बना दिया है
और मेरे योग करते हुए 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं
मैं आप सबके साथ यह वीडियो शेयर करूँगा ताकि हम साथसाथ आसन प्राणायाम का अभ्यास कर सकें
हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल भी हो जन सामान्य के लिए सस्ता और सुलभ हो इसके लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं
आज देशभर में 3 हज़ार से अधिक जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं जहाँ 800 से ज्यादा दवाइयाँ कम क़ीमत पर उपलब्ध करायी जा रही हैं
और भी नए केंद्र खोले जा रहे हैं
मन की बात के श्रोताओं से मेरी अपील है कि ज़रुरतमंदों को इन जनऔषधि केंद्रों की जानकारी पहुचाएँ उनका बहुत दवाइयों का ख़र्च कम हो जाएगा
उनकी बहुत बड़ी सेवा होगी
हृदयरोगियों के लिए हर्ट stentकी कीमत 85 तक कम कर दी गई है
Knee इम्प्लांट्स की क़ीमतों को भी नियंत्रित कर 50 से 70 तक कम कर दिया गया है
आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 10 करोड़ परिवार यानीक़रीब 50 करोड़ नागरिकों को इलाज के लिए 1 साल में 5 लाख रूपए का ख़र्च भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के देंगी
देश के मौजूदा 479 मेडिकल कॉलेजों में MBBSकी सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 68 हज़ार कर दी गई हैं
देशभर के लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्यसुविधा मिले इसके लिए विभिन्न राज्यों में नए एम्स खोले जा रहे हैं
हर 3 ज़िलों के बीच एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा
देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है
यह बहुत बड़ा काम है
जनजन तक जागृति पहुँचाने में आपकी मदद चाहिए
टीबी से मुक्ति पाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा
मेरे प्यारे देशवासियो 14 अप्रैल डॉ० बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मजयंती है
वर्षों पहले डॉ० बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के औद्योगिकीकरण की बात कही थी
उनके लिए उद्योग एक ऐसा प्रभावीमाध्यम था जिसमें ग़रीबसेग़रीब व्यक्ति को रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता था
आज जब देश में मेक इन इंडिया का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है तो डॉ० आम्बेडकर जी ने इंडस्ट्रियल सुपर पॉवर के रूप में भारत का जो एक सपना देखा थाउनका ही विजन आज हमारे लिए प्रेरणा है
आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है और आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फोरिग्न डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भारत में आ रहा है
पूरा विश्व भारत को निवेश इनोवेशन और विकास के लिए हब के रूप में देख रहा है
उद्योगों का विकास शहरों में ही संभव होगा यही सोच थी जिसके कारण डॉ० बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के शहरीकरणurbanization पर भरोसा किया
उनके इस विजन को आगे बढ़ाते हुए आज देश में स्मार्ट सिटीज मिशन और अर्बन मिशन की शुरुआत की गई ताकि देश के बड़े नगरों और छोटे शहरों में हर तरह की सुविधा चाहे वो अच्छी सड़के हों पानी की व्यवस्था हो स्वास्थ्य की सुविधाएँ हो शिक्षा हो या डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके
बाबा साहब का selfrelianceआत्मनिर्भरता में दृढ़ विश्वास था
वे नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति हमेशा ग़रीबी में अपना जीवन जीता रहे
इसके साथसाथ वे यह भी मानते थे कि ग़रीबों में सिर्फ़ कुछ बाँट देने से उनकी ग़रीबी दूर नहीं की जा सकती
आज मुद्रा योजना स्टार्ट यूपी इंडिया स्टैंड यूपी इंडिया इनिशिएटिव्स हमारे युवा इनोवेटर्स युवा एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दे रही है
1930 और 1940 के दशक में जब भारत में सिर्फ सड़कों और रेलवे की बात होती थी उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने बंदरगाहों और जलमार्गों के बारे में बात की थी
ये डॉ० बाबा साहब ही थे जिन्होंने जलशक्ति को राष्ट्रशक्ति के रूप में देखा
देश के विकास के लिए पानी के उपयोग पर बल दिया
विभिन्न रिवर वैली authoritiesजल से संबंधित अलगअलग commissionsये सब बाबा साहब आम्बेडकर का ही तो विजन था
आज देश में जलमार्ग और बंदरगाहों के लिए ऐतिहासिक प्रयास हो रहे हैं
भारत के अलगअलग समुद्रतटों पर नए बंदरगाह बन रहे हैं और पुराने बंदरगाहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया जा रहा है
40 के दशक के कालखंड में ज़्यादातर चर्चा 2nd वर्ल्ड वार एमर्जिंग कोल्डवार और विभाजन को लेकर के हुआ करती थी उस समय डॉ० आम्बेडकर ने एक तरह से टीम इंडिया की स्पिरिट की नींव रख दी थी
उन्होंने फेडरलिज्मसंघीयव्यवस्था के महत्व पर बात की और देश के उत्थान के लिए केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर काम करने पर बल दिया
आज हम ने शासन के हर पहलू में सहकारी संघवाद कोआपरेटिव फेडरलिज्म और उससे आगे बढ़ करके कॉम्पिटिटिव कोआपरेटिव फेडरलिज्म के मन्त्र को अपनाया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डॉ० बाबा साहब आम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं
उन्होंने हमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह ज़रुरी नहीं है कि बड़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो बल्कि भारत में ग़रीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं
हाँ ऐसा भी हुआ जब बहुत से लोगों ने डॉ० बाबा साहब आम्बेडकर का मज़ाक उड़ाया
उन्हें पीछे करने की कोशिश की
हर संभवप्रयास किया कि ग़रीब और पिछड़े परिवार का बेटा आगे न बढ़ पाए कुछ बन न पाए जीवन में कुछ हासिल न कर पाए
लेकिन न्यू इंडिया की तस्वीर बिलकुल अलग है
एक ऐसा इंडिया जो आम्बेडकर का है ग़रीबों का है पिछड़ों का है
डॉ० आम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्रामस्वराज अभियान आयोजित किया जा रहा है
इसके तहत पूरे भारत में ग्रामविकास ग़रीबकल्याण और सामाजिकन्याय पर अलगअलग कार्यक्रम होंगे
मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान में बढ़चढ़ करके हिस्सा लें
मेरे प्यारे देशवासियो अगले कुछ दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं
भगवान महावीर जयंती हनुमान जयंती ईस्टर वैसाखी
भगवान महावीर की जयंती का दिन उनके त्याग और तपस्या को याद करने का दिन है
अहिंसा के संदेशवाहक भगवान महावीर जी का जीवनदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा देगी
समस्त देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएँ
ईस्टर की चर्चा आते ही प्रभु ईसा मसीह के प्रेरणादायक उपदेश याद आते हैं जिन्होंने सदा ही मानवता को शांति सद्भाव न्याय दया और करुणा का सन्देश दिया है
अप्रैल में पंजाब और पश्चिम भारत में वैसाखी का उत्सव मनाया जाएगा तो उन्हीं दिनों बिहार में जुड़शीतलएवंसतुवाईन असम में बिहू तो पश्चिम बंगाल में पोइला वैसाख का हर्ष और उल्लास छाया रहेगा
ये सारे पर्व किसीनकिसी रूप में हमारे खेतखलिहानों और अन्नदाताओं से जुड़े हुए हैं
इन त्योहारों के माध्यम से हम उपज के रूप में मिलने वाले अनमोल उपहारों के लिए प्रकृति का धन्यवाद करते हैं
एक बार फिर आप सब को आने वाले सभी त्योहारों की ढ़ेरों शुभकामनाएँ
बहुतबहुत धन्यवाद